ये सब्जी वगेरा रखा गया है हरा हरा सब्जी जो की भिंडी भी है इसमे शिमला भी है और इसमे क्या है की इसमें बहुत सुंदर लग खीरा विरा भी है और जो की बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमे कोन भी है।

ये पूरा अच्छा लग रहा है ये पूरा ढेरी लोग है लोग और बहुत प्यारा लग रहा है जगह और ढ़ेरी अच्छा लेडिस सब लोग है लोग जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये है कि पूरा उम्म रेड कलर का अथि पहनी है लोग दुपट्टा लगाई --

जो की बहुत अच्छा लग रहा देखने में सब्जी मंडी और इसमें खरीदने खरीदा जाता है सब्जी और ढ़ेरी लोग हैं जो अपना बेच रहा है लोग खरीद रहा है लोग जो की अच्छा लग --

ये पूरा बनाया गया है ग्राउंड जैसा जो मैकेनिक है लोग बना रहा है अपना जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।

एक कप वप रखा गया जो की बहोत अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है पेंटिंग कोई किया है बहोत प्यारा लग रहा है जगह भी अच्छा लग रहा है और इसमें होटल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है इसमें खाने-पीने के लिए आदमी आता है खाता है और खाके चला जाता है जो की --

का ग्राउन्ड है उसमे ग्राउन्ड मे पूरा सब खेल रहे है बच्चे सब है बड़े-बड़े लोग खेल रहा है लोग मैदान जैसा है और इसमे घर भी सब कुछ बना है बिल्डिंग साइड-साइड मे जो की बहुत अच्छा लग रहा हैं देखने मे बिल्डिंग --

सैलून है जो एक लड़का सैलून मे कटिंग अपना बाल कर रहा है लेडिज को और एक जेन्ट्स किसी को कर रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे सैलून घर है।

अ म अ मनोकामना पूरा होइ हमेशा आशीर्वाद बनाए रखी हे माता रानी इसमें सभी लोग पूजा कर रही है लोग महिला लोग बैठ के अपना पूजा कर रही है लोग जब कि माता रानी --